इस फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बच्चे दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई--

इस फोटो में मुझे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे एरोप्लेन दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे पंखा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे किताब की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे फिसल पट्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में मुझे लोहे की पिलर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ प्लास्टिक के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।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

लाइट की सजावटे दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बाइक और का दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।